इस चित्र में एक किराने की दुकान दिखाई दे रही है बहुत से व्यक्ति यहां से सामान लेत--

ठेला और बहोत सारी बाइक की खड़ी दिखाई दे रही--

थोड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं ये चित्र बहुत ही सुंदर लग रहा है।

अह दिखाई नहीं दे रहा काले रंग की रेलिंग भी लगी हुई है गोल मेहराब जैसे दरवाजे बने हुए हैं।

व्हह बढख़े बैठी दिखाई दे रही हैं साइड में तालाब नजर आ रहा है पत्थरों के ऊपर बैठी हुई हैं कत्थई और सफेद रंग की--

ये सात आठ मंजिला बना हुआ नीचे हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

ऑरेंज रंग की बहुत सारी साइकिलें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक ऑटो जाता दिखाई दे रहा है आसपास हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं लाल रंग से रंगा हुआ--

चित्र बनाते नजर आ रहे हैं परीक्षा देते दिखाई दे रहे हैं।

अ खींचता नजर आ रहा है पीछे बड़े बड़े पेड़ भी लगे नजर आ रहे हैं।

ऊपर बहुत से लोग खड़े हुए हैं नीचे भी लोग खड़े होकर--

कास्नी रंग का फूल भी रखा दिखाई दे रहा है।

पीछे टी_वी भी लगी हुई दिखाई दे रही है नायि का सामान सामने रखा हुआ है।

इस चित्र में एक मैकेनिक की शॉप दिखाई दे रही है।

ऊंचे ऊंचे चट्टाने रखी हैं आसपास बहुत हरे-हरे पेड़--

अ तालाब दिखाई दे रहा है तालाब के किनारे एक बड़ी नाव खड़ी हुई है उसमें दो व्यक्ति खड़े होकर--

मॉल दिख रहा है एक शॉप नजर आ रही है इसमें लड़कियों के ड्रेसेस रखे हुए हैं एक डमी बैठी हुई है पीछे की तरफ टी_वी चलती नजर आ रही।

डिश रखा है बिरियानी का एक पानी का गिलास और जग भी रखा हुआ है।

सामने की तरफ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं एक्टिवा और मोटर बाइक भी खड़ी नजर आ रही है।

दिखाई दे रही हैं हरे भरे पेड़ सुंदर लग रहे हैं।